इस तस्वीर पर मुझे बड़ा सा कमरा दिख रहा है।

इस पर कुछ लाइट बल्ब्स और वायर भी दिख रहा है।

इस तस्वीर पर एक कमरा दिखाई दे रहा है।

और एक बैनर भी दिखाई दे रहा है।

सामने पर स्विच बोर्ड भी है।

तस्वीर पर फूल का गमला दिखाई दे रहा है।

और कमरे का रंग संतला रंग और येलो रंग का है।

इस तस्वीर पर तबला और केशू दिख रहा है।

और कमरा भी दिखाई दे रहा है।

और पिलर भी दिखाई दे रहा है।

और एक इंसान भी दिख रहा है।

और लाइट्स बल्ब भी है।